यहां पर एक घर भी दिख रही--

ब्लूटूथ भी दिख रही--

पलाई की बनी हुई टेबल भी रखी हुई है और यहां पर कई सारे फूल लगे हुए है।

यह एक समुद्र का दृश्य है यहां पर दो आदमी बैठकर सफर कर रहे हैं और कुछ दूर में पहाड़ी भी दिख रहे हैं और यहां पर दो फार्म भी रखा हुआ है।

यह एक तलाव का दृश्य है यहां पर एक बोट भी दिख रही है।

यह एक इलेक्ट्रिक शॉप का दृश्य है यहां पर एक कुलर भी दिख रही है।

कुछ दूर में पेड़ पौधे दिख रहे हैं जिसकी कलर ग्रीन है।

यहां एक दु जूता चप्पल का दृश्य है यहां पर गई सारे जूता चप्पल यहां पर बिकी रही है।

यह एक मार्केट का दृश्य है यहां पर कई सारे लोग भी खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं।

भारत का नक्शा बनाकर पोस्टर भी लगा--

यहां पर कई सारे पेंट है टांगे हुए हैं।

यह एक स्कूल का क्लास का दृश्य और यहां पर बच्चे कोई चीज बना रहे हैं।

लेडिस भी बैठी हुई हैं जो और पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह एक मंदिर का दृश्य है यहां पर कई सारे अरे अदमीया भी दिख रही है और लेडीज भी--

और यहां पर बैलून भी दिख रहे है जो ब्लै व्हाइट और पिंक में है।

कई तरह तरह के पेंट उसमें किए हुआ है जो व्हाइट और गोल्डन अ ग्रीन में हैं और ऑरेंज में है और कई तरह के रंग में हैं।

यहां पर बहुत सारा पुतली बैठी रखी हुई है और यहां पर एक लोहे के बने हुए रेलिंग भी दिख--

अर यहां पर घास और पत्तियां भी दिख रही है।

पर एक पाइप भी दिख रही है जो ब्लू कलर की है।

ढेर सारा आदमी भी खड़े हैं और यहां पर थैली में फ्लावर भी रखे हुए हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य और यहां पर एक गेट पर वॉचमैन भी खड़ा हुआ है जो ब्लू और ब्लैक में पहना हुआ है।

यह एक शॉप का दृश्य यहां पर ताले भी दिख रही है और यहां पर एक बोर्ड भी दिख रही है।

यहां पर तेल और क्रीम शैंपू और कई समान दिख रही--

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड का दृश्य है।

पर कई तरह तरह की हेडफोन है।

यहां पर एक बच्चे लिख भी रहे हैं।

यह एक ट्रैक्टर का दृश्य है और यहां पर उसकी का है ब्लू कलर का है।

यहां पर लकड़ी का बनाया हुआ टाटी भी है और यहां पर कई सारे पेड़ पौधे दिख रही है कुछ दूर में और यहां पर मिट्टी भी दिखी जा रही है।

यह एक ट्रक का दृश्य और यहां पर एक आदमी भी भी है और यहां पर ईंटें भी देखी जा रही हैं।

यह एक बैंक का दृश्य है यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।